और उस उस समंदर के किनारे बोहोत सारे आदमी नाव पे बैठे हुए है और नदी किनारे बोहोत सारे कूड़ा-कचरा भी पड़ा हुआ है।

पुल्ला पत्ती यहाँ एक पुल्ला का बना हुआ है जहाँ दोनों साइड से लोहे लगे हुए हैं और सूरज की रोशनी आ रही है।

यह एक बहुत बड़ी नदी है। यहाँ पे एक किनारा भी है। जहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। हरे-भरी दूर-दूर तक ये नदी है। उसके आगे हरे-भरे मैदान हैं।

यह एक चर्च का फोटो है ऊपर ह-नीला-नीला आसमान है बादल है ओर चर्च के आस-पास कुछ पोधे और व्रिक्ष है।

यहाँ पे बहुत सारी खिड़किया भी है इस बिल्डिंग मे।